दी हुई पिक्चर में हमें एक घर नज़र आ रहा है जहाॅं पे अ जिसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है यहाॅं पर हमें घर के बाहर अ जीसस क्राइस्ट का अ साइन नज़र आ रहा है।

यहाँ पर ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पर बहोत सारे शेल्फ भी बने हुए हैं ऊपरस की साइड में हम देख सकते हैं एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहाँ पर हमें काफी सारे पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है और आसमान बिलकुल खुला है।

दी गई हुई तस्वीर मे हमे एक ग्राउन्ड मे अ ऊपर की तरफ एक बहुत ही पुराना घर नजर आ रहा है जो की बहुत ही ज्यादा टूटा-फूटा है।

लोग एक्सरसाइज करते हैं हम देख सकते हैं यहां पे काफी खूबसूरत लाइटिंग्स करी गई हैं और ब्लैक कलर की टाइल्स लगाई गई हैं।

बाउंड्री की ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा है पोटॉनितल गार्डन दया कॉलेज ये एक कॉलेज का गार्डन हो सकता है यहां पे काफी सुंदर-सुंदर हमे पेड़-पौधे हमे नजर आ सकते है।

जैसा की पिक्चर में हम देख सकते हैयहां पर काफी खूबसूरत पार्क बनाया गया है और यहां पर काफी खूबसूरत छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है जिनमे की लाल कलर के काफी सुंदर फूल लगे हुए है ।

यहाँ से एक रोड भी नजर आ रही है और यहाँ पर काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है हमें खेत नजर आ रहा है जो की पार्टीशन में डिवाइडेड है।